यह एक बहुत ही बड़ा गार्डन है और यह गार्डन काफी बड़ा है यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं।

कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर लेडिस जेंट्स सभी के कपड़े मिलते हैं लोग यहाँ पर कपड़े खरीदना काफी पसंद करते हैं यहाँ पर कपड़े बहुत ही--